इसमे भी नीचे एक फर्श टाइप्स दिखाई दे रही है और हरा कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

ताज महल सफेद कलर का दिखाई दे रहा है जहां बहुत ही सुंदर सज्जित हो रहा है हरे कलर का गार्डन टाइप् से दिखाई दे रहा है।

इस में भी एक मस्जिद टाइप से दिखाई दे रहा है जो नीलापीलासफेद कलर का दिखाई दे रहा है।

पुराना खंडर सा दिखाई दे रहा है जिसमे विशाल प्रचीनतं दो मूर्तिया दो दो मूर्तिया दरवाजे के किनारे या बोल दो की दीवार पे बना हुआ है ये--